शदर हॉस्पिटल यहाँ पे ब्लूड का जो डोनेट करते है उसका हॉस्पिटल है ब्लूड का।

छत से ऊपरों की गांव का फोटो लिया गया।